व्हाइट कलर में है अजीब लग रहा है देखने में।

ये पीछे ब्लॅक कलर का पड़दा लगा हुआ हैं और ये तीनों लड़के डांस कर रहें हैं।

पेट्रोल पंप है यहां पे गाड़ियों में पेट्रोल लिया जाता है।

पेट्रोल से गाड़ियां चलती हैं और यहां पे कुछ अंधे--

फर्नीचर का सामान रखा गया है सोफा भी है।

और सामने फ्लावर प्लांट्स भी लगे हुए है नीचे काफी सा साफ सफाई है।

और गेट पे भी कुछ लिखा गया है बहोत सुंदर--

यहाँ पे बोर्ड है बोर्ड के ऊपर गणेश जी की --

और ये लेडिजे हैं जैकेट पहन के क्रिश्चियन टीचर हैं हा--

और काफी सारा बोर्ड लगा हुआ है। रेड कलर में भी और नीचे बाइक वगैरह भी खड़ी है बहुत सारे लोग भी खड़े हैं।

और दोनों साइड में लोग नहा रहे एक साइड में लोग नहा रहे हैं।

ये सरकारी बंगला टाइप का लग रहा है नीचे--

और इसमें किनारे किनारे पेड़ पौधे भी हैं ऊपर से छज्जा है।

बाहर से सीढ़ियां बनी है टाइल्स वाली और बहुत ही अच्छा--

काफी संगमरमर के खमियाँ वैगैरह हैं सुंदर साज सजावट है।